गाड़िया चल रही है। लोग कुछ लोग पैदल चल रहे है। अगल-बगल में घर भी है।

डिफेंस पोजीशन में है ये लड़का।

यह मंदिर काफी बड़ा सा है। लोग इस पर श्रद्धा-श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने आते है। सुबहे से शाम तक ये मंदिर का गेट भी काफी अच्छा सा लुक दे रहा है काफी अच्छा लुक दे रहा है।

काफी भीड़ दिखाई दे रही है लोग आ रहे हैं ट्रेनों से निकल रहे फटा-फट जा भी रहे हैं ट्रे कुछ लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं।

ये काफी बड़ा सा स्कूल है यहाँ पे बच्चा लोग को अच्छे संस्कार दिए जाते है यहाँ पे लेबोरेट्रीस अच्छी हैं।

ये गेम है यहाँ पे जब एक्सरसाइज करते है अपनी फिटनेस का ध्यान रखते है। काफी सरे टूल नज़र आ रहे है।

यहाँ पर काफी भीड़ रहती है दिन भर। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी टाईट है। कोई यहाँ पे गलत व्यवहार नहीं करता है।

लाल कलर का बिल्डिंग दिखाय दे रहा है कुछ लोग चल रहे हैं सफाई कर रहे है।

लोगो को लेजाने के लिए टूरिस्ट बस है एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है।

ड्राइविंग शीट पे कुछ लोग कुछ लोग बाइक से चल रहे है। इस लाल रंग का घर इसमें दिखाई दे रहा है बड़ा सा।